यह एक खेल का मैदान दिखाई दे रहा है यह इसके ऊपर एक खंबा लगा हुआ है उस खंबे में एक लाल झण्डा लगा हुआ है बहुत सी पब्लिक हुई देख पब्लिक बैठी हुई है।

उसमें लाइट जल रही है ऊपर वाले छत में उसमें बाजू में एक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसका कलर सफेद है।

ये डोक डेकोरेट मालाएं दिखाई दे रही है माला सफेद कलर में है बीच में इसमें गोल्डन गुड़ियां लगे हुए है गुड़ियों के अलग-बगल वो लाल-लाल कलर के फूल लगे हुए है।